यह एक गार्डन है यहां पे हरे भरे घास भूसा लगा हुआ है पेड़ पौधा लगा हुआ है एक बिल्डिंग है।

यह एक दुकान है इसमें साबुन शैंपू तेल साबुन।

यहां पर एक कोचिंग सेंटर दिख रहा है इसमें डेक्स बेंच स्टूल ऊं बोर्ड --

और ऊं रोड के बीच में के पेड़ पौधा भी लगा हुआ--

ब और बाइ एक बाइक लगा हुआ है।

इस पिक्चर में हमें यह देखने को मिलता है कि कैम्बेज सेकेंडरी स्कूल है।

ये मतलब कि ये झा झारू हो गया टेबल हो गया बाल्टी हो गया कोटरा हो गया सफाई करने वाला हो गया।

सब लगी हुई हैं एक जानवर हैं वो दिखाई दे रहा--

और कुर्सिया रखी हुई है एक जग रखी हुई है दो-तीन पिक्चर दिखाई दे रही है एक घड़ी टंगा हुआ है।

में इसमें दो लड़की बड़ी है और--

ये मूर्ति रखी हुई है और एक आदमी है जो पूजा कर रही है।

एक ओ दो मकान है और यहां पे--